भयंकर लग रहा है पर्दा लगा हुआ है मशीन है।

लिखा हुआ है पचासी तेतालिस जीरो दू --

यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ा है बहुत सारा कचरा है।

यह फील्ड है फील्ड बहुत बड़ा है | फील्ड मे बहुत सारे घास उगे हुए हैं | देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं |

यह मंदिर है मंदिर बहुत सुंदर है बहुत डिजाइन से बनाये गये है यह ऑरेंज कलर के दिख रहे है गेट पे बहुत भीड़ लगा हुआ है।

यह ऑफिस जैसा दिख रहा है अंदर में स्टेज बनाये गये है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यह खूब सुन्दर सजाये गये है बहुत सारे बल्ब जल रहे है।